आस-पास हरे पेड़ लगे हुए है। एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसपे बताया जा रहा है की हवाई अड्डा कितने किलोमीटर दूर है।

यह फोटो एक जिम की है जिसकी दीवारें येल्लो और व्हाइट कलर से पैंट की गई है जिसमे ऊपर दो फेन लगे हुए है सामने बलून है जिनका कलर पिंक और व्हाइट कलर का है।

यहाँ एक मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें तीन मंदिर बने हुए हैं। सामने एक माला लगी हुई है जो रेड गोल्डन और ब्लू कलर की दिखाई दे रही है।

जिसपे येलो और पिंक कलर के बलून लगे हुए हैं साइड मैं एक दूकान हैं जिसपे एक लड़का सिंदूरी कलर की टीशर्ट पहने हैं।

यह एक कटिंग करवाते हुए लड़के की है सामने एक अंकल है जो लड़के की कलिंग कर रहे है।

इस पिक्चर में एक टेबल दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक ट्रे दिखाई दे रही है ट्रे का कलर ब्लैक है उस ट्रे में दो कप रखे हुए है जो टी से भरे हुए है।